मुझे देखने में लग रहा है की फिल्ड है।

दिखने में खूबसूरत जगह है।

मुझे देखने में बहुत बड़ा मार्किट लग रहा है जोभी मार्किट है।

दिखने में बहोत सुन्दर किराना दुकान लग रहा है और जो भी किराना दुकान है बहोत अच्छा दुकान है मुझे बहोत पसंद है।

हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।

पसंद भी आ रहा मुझे अच्छा जो मुझे अच्छा मुझे बहोत बहोत पसंद भी आ रहा मुझे बहोत अच्छा लग--